यह बस से बहुत से पैसेंजर उतर रहे हैं इस बस मे बहुत से पैसेंजर चढ़ रहे हैं।

इसी दुकान पर बहुत सारे किताब कॉपी कलम पेंसिल आदि रखते है।

इस मैदान मे हरी-हरी घास है इस मैदान के किनारे पर बड़े-बड़े बिल्डिंग है ।

पहाड़ है यह पहाड़ काफी बड़ा है इस पहाड़ पर बहुत सारे पत्थर हैं।

इस बिल्डिंग के किनारे एक ग्राउंड है यह ग्राउंड लोहे की है यहाँ पर काफी सारे आदमी घूम रहे हैं।